यहाँ पर एक फंक-- कोई फंक्शन की तैयारी की जा रही है जहां पर बहुत सारे चेयर्स लगाए गए हैं और कुर्सियों को सफेद-- अ लाल रंग के कपड़े से कवर किया गया है पीछे--

पर एक बहुत बड़ा सा गिटार दिखाई दे रहा है जिसे नीले रंग से पेंट किया गया है या फिर नीले रंग की पट्टी के कपड़े का कपड़ कवर चढ़ाया गया है।

अगल-बगल में बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं ऊपर नीला आकाश साफ़ देखा जा सकता है।

और एक बहुत सारी किताब की सेल देखी जा सकती है जहां पर बहुत सारी पुस्तकें एक साथ रखी हुई है पीछे में कुछ दरवाजे दिखाई दे रहे है।

इसे एक बहुत बड़ी सी जो दुकान जैसी कुछ दिखाई दे रही है दरअसल यहां पे कुछ फंक्शन वगैरा होता हुआ देखा जा सकता है जहा पर बहुत सारे चेयर्स लगाए गए हैं।

जिसकी दूसरी तरफ भी बहोत सारी घांसे वगैरा लगाई गई है। यह स्थान देखने में बहोत ही सुंदर व आकर्षक दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक सीधी रोड जाती हुई देखी जा सकती है सामने एक बहुत बड़ा सा मकान दिखाई दे रहा है जिसमे जिसे सफेद रंग से पेंट किया गया है और ब-- जिसमें बहुत सारी खिड़कियां ल-- बनी हुई है नी--

इसकी दूसरी तरफ कुछ गेट वगैरा लगाए गए हैं और उ सामने बहोत सारी लाइट की तारें जाती हुई साफ देखी जा सकती है ऊपर नीला आकाश देखा जा रहा है।

यहाँ पर एक बड़ा-सा मकान दिखाई दे रहा है जिसे पीले और ऑरेंज कलर से पेंट किया गया है| ऊपर बहुत सारी लाइट की तारे जाती हुई साफ देखी जा सकती है।